यह बकरी का बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक दिखाई दे रहा है | इसमें छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई --

व्हाइट कलर व्हाइट कलर की लाइन बनी खींची दिखाई दे रही है।